मुझे इस चित्र में एक रोशनी नजर आ रही है।

मुझे इस चित्र मे लकड़ियां दिख रही है।

मुझे इस चित्र में एक नदी दिख रही हैं।

मुझे इस चित्र में एक बगीचा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में यूनियन लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक टेबल दिख रही है।

मुझे इस चित्र में मुझे गुरुकृपा लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में लाइट जलती दिख रही है।

मुझे इस चित्र में फोटो दिख रही है मुझे इस चित्र में पेड़ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में दो मजदूर दिख रहे हैं।